अपना पिक खींच रहे है और यहां पे टेबुल कुर्सी रखी हुई --

साड़ी पहनी हुई है और हाथ उठा ऊपर उठा है इसीलिए डांस कर रही हैं ।

नोट हमारे यहां सभी शुभ अवसर पर दूध दही मक्खन घी पनीर हरा मटर मिठाई एवं बर्थ डे केक का आर्डर लिया जाता है।